यहाँ पर एक यहाँ पर एक पुरुष खड़ा एक खड़ा हुआ है एक लेटा हुआ है वो भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने एक नीली टीशर्ट भी पहना है जैसे कि--

ऑटो ऐसे रखी हुई हे के उसके बगल मे भी खड़ा हुआ हे की उसकी छतरी भी बहुत सुंदर लग रही हे की यहाँ पर जो की काला काला बादल भी दिख रहा हे यहाँ पर कुछ बिल्डिंगे भी लग रही हे यहाँ पे

यहाँ पर एक दुकान रखी हुई है एक यहाँ पे जो कि पाउडर वगैरह मिलता होगा कि एक स्टोर वाली दुकान दिख रही है यहाँ पे एक पुरुष भी खड़ा हुआ हैं ये--

कोई शहर भी दिख रहा है जोकि बिल्डिंगे भी दिख रही है ऊँची- ऊंची यहाँ पे बहुत से पुरुष काम कर रहे है यहाँ पर कोई सिर पर टोलियाँ भी बंधे हुए है कुछ पेंट भी पेहने है कुछ लोअर भी पेहने है कुछ चड्डे भी --

यहाँ बाजू ऊंची बड़ी बिल्डिंग बनी ही हैं ये तो कोई हॉस्पिटल लग रही हैं या कोई स्कूल वगैरह होया कोई और भी बिल्डिंग होगी यहाँ पे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं यहाँ पर बादल भी दिख रहे हैं यहाँ पर गाड़िया भी रखी हुई हैं।